नमस्कार जियोजेब्रा में एक्सपोर्ट फीचर के इस जिओजेब्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
अगर यह पहली बार है जब आप जिओजेब्रा प्रयोग कर रहे हैं तो कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर इंट्रोडक्शन टो जियोजेब्रा ट्यूटोरियल देखे
इस ट्यूटोरियल में हम जिओजेब्रा में एक्सपोर्ट फीचर के बारे में सीखेंगे
ड्राइंग पैड फिगर्स को स्टैटिक पिक्चर की तरह एक्सपोर्ट करें और जिओजेब्रा फाइल को डयनैमिक एचटीएमएल वेबपेज की तरह एक्सपोर्ट करें जिओजेब्रा शुरू करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ GNUलिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबन्टु वर्जन 1004 एलटीएस और जिओजेब्रा वर्जन 32400 अब जिओजेब्रा विंडो के लिए कोई जिओजेब्रा फाइल जो आपने मेन्यू ऑप्शन में फाइल और ओपन सेलेक्ट करके पहले ही बना ली है खोलें
अब concentriccirclesजीजीबी सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें
अब एलजेब्रा और स्प्रेडशीट व्यूज को क्लोज करें अगर ये मेन्यू ऑप्शन व्यू सेलेक्ट करके खुलती हैं और ऑप्शंस अनचेक करें
हम मूव ग्राफ़िक्स व्यू टूल प्रयोग कर सकते हैं और ड्राइंग पैड ऑब्जेक्ट्स को स्थित करें
आप ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं या आप पूरा ड्राइंग पैड एक्सपोर्ट कर सकते हैं यदि आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते
मेन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करें फाइलगटीजीटी एक्सपोर्टगटगट ग्राफिक्स व्यू एएस पिक्चर फाइल का फॉर्मेट जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें पंग सेलेक्ट करते हैं
आप स्केल बदल सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को छोड़ देंगे
आप रेसोलुशन को बढ़ा या घटा सकते हैं
सेव पर क्लिक करें
यहाँ फोल्डर नेम सेलेक्ट करें फाइल नेम सेलेक्ट करें
फाइल टाइप पंग यहाँ पहले से ही है और सेव पर क्लिक करें
सारांश के लिए ड्राइंग पैड पर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें या पूरे ड्राइंग पैड को एक्सपोर्ट करने के लिए इसे अनसेलेक्ट छोड़ दें
मेन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करें फाइल जीटेक्सपोर्ट जीटी ग्राफिक्स व्यू एएस पिक्चर
फॉर्मेट स्केल और रेसोलुशन को चुनें और एक्सपोर्ट की गयी फाइल को सेव करें
अब पाठ के दूसरे हिस्से के लिए
जिओजेब्रा को डयनैमिक वेबपेज की तरह एक्सपोर्ट करें
सबसे पहले जिओजेब्रा फाइल खोलें
उदाहरण के लिए इंटीरियर anglesजीजीबी अब मेन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करें फाइल एक्सपोर्ट जीटीजीटी डायनामिक वर्कशीट एएस वेबपेज एक बॉक्स प्रदर्शित होता है
टाइटल ऑथर नेम और डेट एंटर करें
यहाँ जनरल और एडवांस्ड दो टैब हैं
जनरल टैब में आप जो टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के नीचे चाहते हैं टाइप कर सकते हैं
कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रदर्शित होने के लिए यह टेक्स्ट ऐड करें
मैं कीबोर्ड पर CTRL X दबाकर इनफार्मेशन को कट और पेस्ट करूंगी
और फिर कीबोर्ड पर दुबारा CTRLV दबाएं
त्रिभुज के शीर्षों को मूव करें और त्रिभुज के आंतरिक कोणों की वैल्यूज का अनुसरण करें
अब कंस्ट्रक्शन के नीचे ऐड करें आब्जर्व व्हाट हैपेन व्हेन आ ब एंड सी आरे ओन आ स्ट्रेट लाइन बाय ड्रैगिंग थे वर्टिस
अब एडवांस्ड टैब के लिए यहाँ चेक बॉक्सेस हैं जो फीचर्स जोड़ते हैं और जिओजेब्रा के ऑप्शन्स को जिओजेब्रा पेज के एक भाग की तरह सम्मिलित करते हैं
वेबपेज पर राइट क्लिक ऑप्शन को सक्षम बनाने के लिए इसे जाँचें मूविंग लेबल्स को सक्षम बनाने के लिए इसे जाँचे एक आइकन के लिए जो कंस्ट्रक्शन को पुनः प्रारंम्भिक स्थिति में बदलता है इसे जाँचें जिओजेब्रा वेबपेज पर डबल क्लिक करके यदि आप अपने कंप्यूटर पर जिओजेब्रा एप्लीकेशन विंडो खोलना चाहते हैं इसे जाँचें अगर आप मेन्यू बार टूल बार और इनपुट बार या सेव और प्रिंट फीचर्स को अपने वेबपेज पर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो यहाँ उचित बॉक्सेस को सेलेक्ट करें
आप जिओजेब्रा विंडो की चौड़ाई और ऊंचाई को बदल सकते हैं जो यहाँ वेबपेज पर प्रदर्शित होता है
एक्सपोर्ट सेलेक्ट करें और ब्राउज़र में देखने के लिए इसको एचटीएमएल फाइल की तरह सेव करें
जैसा कि मैं फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र उपयोग करती हूँ यह तुरंत ही खुलता है एक बार जब मैं इसे एक्सपोर्ट करती हूँ
आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के नीचे टेक्स्ट देख सकते हैं
जैसा कि यह डायनामिक वेब पेज है आप शीर्षों को मूव कर सकते हैं और चित्र में बदलाव को देखें
सारांश के लिए जिओजेब्रा फाइल खोलें जो आप पहले ही बना चुके हैं मेन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करें फाइल जीटेक्सपोर्ट जीटी डायनामिक वर्कशीट एएस वेबपेज टाइटल टेक्स्ट और एडवांस्ड फीचर चुनें और अपनी जिओजेब्रा फाइल को वेबपेज एचटीएमएल फाइल की तरह एक्सपोर्ट करें
वेब ब्राउज़र प्रयोग करके एचटीएमएल फाइल देखें
वेब ब्राउज़र पर काम करने को जिओजेब्रा के लिए आपको जावा संस्थापित करना ज़रूरी है
अब नियत कार्य के लिए - जिओजेब्रा फाइल को खोलें और कुछ ओब्जेट्स या पूरा ड्राइंग पैड सेलेक्ट करके इसे स्टैटिक पिक्चर की तरह एक्सपोर्ट करें
और डयनैमिक वेब पेज की तरह
डयनैमिक वेब पेज में निम्न फीचर्स सम्मिलित करें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
अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद